और है और उसमें तीन चार गेट--

दो बाईक रखी हुई है आगे साइड दुकान का सामान रखा हुआ है और ऊपर साईड चद्दर तंग --

हिस्सा नीचे साईड पड़ा हुआ है नीचे के साईड दूब उगी हुयी है बहुत बड़ा ग्राउंड है।